ये चित्र मा हम तें सड़किम मछ्येरू छा दिखेणु जैन लाल बुशर्ट छ पैनि।

और एक बड़ी नदी भी छ दिखेणी और नदी का ही किनारा पर हम तें एक सेणू बाटु भी छ दिखेणु और कुछ ड़ाला भी दिखेणा।

भित्तर हमथे भौत सारी सीट भी छन दिखेणी जू फणा लोग कुछ बेठ्या भी छन अ कुछ दुकानी भी छन दिखेणी।

जू का हाथम नौनियाल का हाथम एक तबला छा और एक बैरवान के हाथम एक सितार छ दिखेणु।

ये चित्र मा हम त एक बड़ी दुकान छ दिखेणी जैकाम भीतर हम त कुछ छ दिखेणा जक फणि हम त कुछ गाड़ी भी छन दिखेणी दिखेण से यू एक गेराज छ दिखेणु जख गाड़ी ठीक होंदी छन।

भ्वाँ फणा हम त टायर भी छा दिखेणा और कुछ गाड़ी सही कनो को सामान भी छ दिखेणु यू का एंच हम त एक लोहा की मशीन भी दिखेणी।

पिछाड़ी नदी हमते एक नावा बि छ दिखेणी जेगा ऐंच एक ट्यूब बि छ रखीं। पार हमते एक बडु पहाड़ च दिखेणु जख फण हमते बोहोत सारा डालन दिखेणा।

जु दिखेण से लगदु दूसरा भितर छ जायुं जख बिटि वैन लाइन लीनी वे का अगाड़ी हम तें एक तार वालू ब्रुश भी छा दिखेणु अर दुई हथोड़ी भी छन दिखेणी।